यहाँ पे स्कूटी पे एक लौंडा जा रहा है।

मंदिर में बैठाया हुआ है और ओ अ अ बाउंड्री मारा हुआ है ।

एस.ए. और गाड़ी की लाइटें जली पड़ी रखी --

प्रिये मछुवारे मछली पकड़ रहे हैं और यहाँ पे कैरेट में मछिलायें को --

यहाँ पे कुछ मकान हैं मकान के अंदर कुछ उम्म उम्म कुर्सियां हैं कुछ शटरे हैं कुछ --

और एक चक्का हैं उसमें तीन वोल्ट नज़र आ रही हैं और पेट्रोल लिखी गई नज़र आ रही हैं।